है इस फोटो में एक आदमी है जिसने अपनी खुद की सेल्फी ली है जो कि बड़ा परेशान लग रहा है और उसने एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ी है। उसके आस-पास चट्टान हैं पेड़ हैं पोधे हैं और ये दोपहर का सीन लगता है।

यहाँ पर एक आदमी अपनी दुकान के अंदर बैठ के बैठा है जो कि एक बुक शॉप है और फो हाथों में उसने फोन ले रखा है और वो कैमरे के तरफ देख रहा है और उसने टोपी पहनी है और जैकेट पहन रखा है।

और यहाँ पर बहोत सारे लोग है।

यह एक इलाहाबाद बैंक के शाखा की फोटो है जहां पर एक आदमी साइकिल अपनी खड़ी कर रहा है और एक आदमी नीचे बैठा है।

यहाँ पर एक आदमी फोन पे बात कर रहा हैं। जो कि स्टेसनरी के अंदर है और ये चेयर मे बैठा है और इस के आस पास बहोत सारे बुक्स हैं।

ये फोटो रात के टाइम ली गई हैं और ये एक यह कैंडल जिसे हम मोमबत्ती बोलते हैं उसकी स्टैंड के ऊपर की फोटो है इस इस फोटो में दो मोमबत्ती जल रही है और और आसपास बहुत सारी मोमबतियाँ हैं।